इसमें ज्वेलरी की दूकान है | माँ ज्वेलर्स ब बहुत प्रकार के ज्वेलर्स के दूकान --

यहाँ सामने द्रश्य एक मॉल की है मॉल के अन्दर कई लोग आना-जाना कर रहे हैं।

देखने में काफी यम्मी प्रतीत होता है।

और अ लिखी हुई है। और इसमें बड़ी सी गेट लगी हुई है।

और इसमें कई लोग लोगो की एक्सरसाइज़ एक साथ हो सकती है किन्तु --

एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है।

पीछे ईशु की साइन है।

जिसमे काफी ब अ एक ताला लगी है।

और एक व्यक्ति बगल में बैठा है।

चेयर की रंग कुर्सी की रंग अ लाल है।

जो आकर्षक दिख रही है।

सामने एक किराना इस स्टोर है। किराना इस स्टोर में काफी रंग बिरंगे पैकेट रखी हुई है।

तेजी से अम-अ वृद्धि कर रहा है।

जिसमे में काफी संनाटा दिख रही है। एक भी व्यक्ति दिख नही रहे है।